इस तस्वीर में सामने की ओर एक कांच का काउंटर रखा हुआ है।

इसके किनारे बहोत से लोग बैठे हुए हैं।

इसमें की पीछे की ओर एक हवाई जहाज खड़ा है।

छत पर काले व लाल रंग के कई गुब्बारे लगे हुए हैं।

व उसके बगल में एक नीले रंग का डस्टबिन भी रखा हुआ है।